ये इसका बैकग्राउंड एकदम काला है और नीचे का कारपेट इनका लाल है।

जो की अपनी सवारियों का इंतज़ार कर रहे हैं साथ में एक दो लोग तिरंगा बांधे हुए कहीं जा रहा है।

दो मजदूर हैं कुछ मशीन एक बड़े से मशीन कुछ तेल या फिर आटे की गुदायीं कर रहे हैं साथ में इसके बगल में एक बड़ा सा इलेक्ट्रिक मीटर लगा है जिसमें एक लाल रंग का एक इंडिकेटर जल रहा है।